टेक्निकल हैंड भी है ई सब के पास।

ये ढ़लईया लग रहलै पाँच इंची ढ़लईया कर रहलै की दस इंच --

ये घूमते एगो लड़की है एगो लड़का है।

मतलब कोई चीज़ के प्रोग्राम रहे। नया नया घर बनलै बहुत आदमी अएले है। कोई चीज़ के प्रोग्राम ।